इ बिल्डिंग के डिजाइन हउवे एकरा के पहिले लकड़ी से बनावल बाटे पूरा एकर साइज निकालल बाटे केने से केने का बाटे कौना --

व पूजा की मूर्ती बनल बा। दुर्गा जी के साम गणेश जी कार्तिक जी लक्ष्मी जी सरस्वती जी --

स्कूल हउवे। एक से बारह बजे ले बाटे। एईजा पढ़ाई होला। इंटर के भी कॉलेज हो जाला दस के बाद से। शिक्षक बा लोग स्कूल के आगे खड़ा जो कि प्रचार करता लोग।

ई स्टेज हउए। विवाह करे खातिर न सजावल गईल बाटे। एजुकीया विवाह होई शगाई होला बाइथेला आदमी। जयमाला होला सब यएजुकीय बइठ के आदमी देखेला।

दुर्गा जी के जी एजुकिया पूजा होता दू आदमी बैठके पूजा करताटे पंडित जी पूजा करवा ताने एजुकिया बैठल बानी।

माइक में मंत्र पढ़तनी हनुमान जी की मूर्ति खाड़ा बनावल बा आगे लागल बा।